जो की गेम के साथ अपना खेल का भी आननद ले रहै है और अच्छा घड़ी भी लगा है उस जगह बैठने का भी व्यवस्था लगा है खुर्सी अच्छा --

बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है जो की इस जगह कमला में फूल है बहुत ही अच्छा जगह दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर--

--और जो भी है अच्छा पावर प्लांट फिर जो भी होगा बहुत अच्छा है पार्क टाइप में भी जगह दिख रहा है बहुत सुन्दर--